ये एक रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है।

एक गाड़ी ब्लू कलर की है तो एक गाड़ी रेड कलर की है।

यहां पे बाजू में एक बहोत बड़ा स्पीकर भी रखा हुआ है।

यहां पे दो गद्दे और छ तकिए भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पे दो ढोलक--